यहां पर गंज कुछ इमेज में दिख रहा है की यहां पर बोहोत सारा बड़ा तालाब नजर आ रहा है बादर भी लजर आ रहे फटे फटे से यहां पर कुछ भी--

यहाँ पर देखने को मिल रहा है शासकीय नवीन शासकीय नवीन महाविद्यालय परिकल लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ ऑनलाइन नाम करो ऑनलाइन होता है यहाँ पर काम चलता है यहाँ पर कुछ--

इस इमेज मे देखने को मिल रहा है मुझे इस इमेज मे देखने को मिल रहा है बहुत बड़ा विद्यालय सा लग रहा है शायद बहुत बड़े कुछ झंडा वगेरा भी लगा हुआ है बहुत सारे गेट दिख रहे है यहां पर जंगल भी दिख रहे है बहुत सारे यहां पर--